फोटो में मुझे लोहे का गेट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे टाइल्स दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे स्टेज दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बच्चे नाचते हुए दिखाई दे रहे है।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

इस फोटो में मुझे दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कुछ लोग--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

इस फोटो में मुझे पुरूष दिखाई दे रहा--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

इस फोटो में मुझे लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे मालगाड़ी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे दुकाने दिखाई दे--

इस फोटो में मुझे लाइट दिखाई दे रही--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

इस फोटो में मुझे टेबल कुर्सी दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे बहुत सारी बसें दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बिजली के खंभे दिखाई--

इस फोटो में मुझे कांच की खिड़की दिखाइ--

इस फोटो में मुझे पेड़ दिखाई दे--